इस इमेज में हमें एक झोपड़ी दिखाई दे रही है झोपड़ी के पास में एक साइकिल रखी हुई है और एक कुर्सी रखी हुई है जो लाल रंग की है और एक आदमी--

इस इमेंज में हमेंएक कमरा दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार का कलर हरा है और एक ए.सी दिखाई दे रहा है। जो सफेद रंग का है यह कप्यूटर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने येलो शर्ट पहनी हुई है और ब्लू जींस पहनी हुई--

इस इमेज में हमें एक स्टेशनरी दिखाई दे रही है और आदमी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सफेद शर्ट पहनी हुई एक आदमी ने चश्मा लगाया हुआ है।

इस इमेज में हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने लाल शर्ट पहनी हुई है ब्लैक जैकेट पहनी हुई है मैं एक ब्लैक चेयर पर बैठा हुआ है पीछे उसके बहुत सारी बुक और पैन रखी हुई है।

इस इमेज में हमें एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक पाइप दिखाई दे रही है जो गुलाबी रंग की है एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने--

एक ब्लू शर्ट और ब्लैक पेंट पहना हुआ है पीछे की तरफ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो गुलाबी रंग की है तार दिखाई दे रहे हैं और एक बर्तन दिखाई दे रहा है जिसका कलर सिल्वर --

जो सफेद रंग की है एक महिला खड़ी हुई है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और मुंह पर नीला रंग का मास्क लगा हुआ हुआ--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

इस इमेंज में हमें एक इमारत दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है। इमारत की छत पर एक छतरी लगी हुई है और बोर्ड लगा हुआ है जो --

इस इमेज में हमें एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में एक आदमी है जिसने सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लैक --

इसमें दो आदमी दिखाई दे रहे हैं एक ने पी-ली टीशर्ट पहनी हुई है दूसरे ब्लैक शर्ट पहनी हुई है और-- नीला पेंट पहना हुआ है।